वाइट कलर की दीका दीवार दिखाई दे रही है जिसके साथ पेड़ लगा हुआ है साथ में हमें --

के पोस्टर लगा हुआ है हमें एक स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है एक लैंप दिखाई दे रहा है और कुछ और भी बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

और हमें एक बोटल दिखाई दे रही हैं जो डेस्क पे पड़ी हुईं हैं।

हनुमान जी की फोटो दिखाई दे रही है।

और साथ में एक रेड कलर की लाइट दिखाई दे रही है।

ये फोटो में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ कुर्सियां लगी हुई है और साथ में कुछ टेबल लगे हुए हैं और--

यहां पे हमें चमचम दिखाई दे रही हैं बर्फी दिखाई दे रही है और रसगुल्ले दिखाई दे रहे हैं कुछ ब्रेड पड़े हुए हैं।

फोटो खिंचवा रही है इन सभी औरतों ने--

और यहां पे हमें एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

यहां पे हमें सफेद रंग में--